बहुत ही बड़ा है यहां पे कोई भी नहीं दिख रहा है अभी ये सुनसान पड़ा है।

यहां पे एस_बी_आई बैंक और एस_बी_आई ए_टी_एम दिख रहा है।

यहां पे पीछे एक ईंटों की इमारत भी दिख रही है।

इन सभी लड़कियों ने बहुत सुंदर ड्रेसे डाल रखी है सभी लोगों ने यहां पे लहंगे पहन रखे है।

यह एक बहुत सुंदर मार्केट है अ--

यह मछलियां छोटी और बड़ी सब साइज में उपलब्ध हैं कुछ लोग यहां शॉपिंग के लिए आ रखे हैं।

यहां पे लाल पीले सफेद रंग के फूल दिखाई दे रहे है।

हेलो दोस्तों यह एक हॉस्पिटल की तस्वीर है।

यहां पे पिंक कलर की ड्रेस है।

यहां पे एक सैनिटाइजर की बोतल भी है बगल में आइसक्रीम का कवर्ड भी दिख रहा है।

हैलो दोस्तों यहां पे बहुत से लोग दिखाई दे रहे है जिसमें महिलाएं पुरुष और बच्चे उपलब्ध है।

बगल में दो बहुत लंबे लंबे पेड़ भी दिख रहे हैं यह हरियाली से भरे हुए हैं।

हेलो दोस्तों यह तस्वीर एक की लग रही है।